अ वेट कम करने में काम आती है लोग लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ट्रेडमिल्स को ले के।

छोटे छोटे बच्चों के बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ने लगे हैं।

अ वाटर पाइप लगी हुई है पेड़ पौधे लगे हुए हैं क्या गम--

एक बायू की अ वशू की जगह होती है।

सामने किसी ऑफिस की फोटो देखे हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दिखने में क्योंकि साफ सुथरा है लोग अपने-अपने कामों में बिज़ी --

हम्म सामने शीशा लगा हुआ है स्काइ ब्लू एंड व्हाइट कलर का पेंट करके है।

किसी ऐसी जगह की फोटो है जो कोई अ जहां पे तो बीस-पच्चीस ट्रकें लगी हुई हैं सामने।

वो जो शायद हमारे जिम के कोच हैं थके हारे रेस्ट कर रहे हैं किसी चेयर पे।

कोई जगह की फोटो है ऐसा लग रहा है दिखने में हॉस्पिटल है।

जिसके बगैर शायद ज़िंदगी मुकम्मल है ही नहीं क्योंकि आजकल तो सेहत सबकी खराब होते होते होते होते खराब ही होती है।

जिनको बहुत प्यारे-प्यारे रंग करके है सफ़ेद ले लो ओ सब्ज़ ले लो।

हमारी एक्सर्साइज़ ना हो तो बॉडी कभी फिट --